यहाँ पे हमे जो है आम वहाँ पे तरबूज है मेंगो और ऐसे काफी सारे जो है फल नजर आ रहे है वहाँ पे जो थाली है वहाँ पे उसके तीन चक्के लगे हुए है नजर आ रही हैं और वो लकड़ी की बनी हुई है।

वो खाली है वहां पे कोई रेले नजर नहीं आ रही है उसके बगल में जो है एक दुकानें नजर आ रही है वहां पे जो काफी सारे के सामान नजर आ रहे है वहां पे कुछ लोग भी जो है हमें आपस में कुछ तो भी लेते हुए नजर आ रहे है।

दी गई चित्र है एक सैलून का चित्र है वहाँ पे हमें जो है एक लड़का जो सैलून करने के लिए आया है वहीं पे उनका जो मालिक है वो देखा रहे है की उनकी कटिंग केसे करी जाए वहाँ पे जो कुर्सी लगी हुई है वो भी लाल कलर की है उसमें --

उनको जो है ढकोल टी-शर्ट लटकाया हुआ है वो जो है नीले कलर का उनके साइड में जो है एक और चेयर लगे है उसका लाल कलर है वहां पे कोई बैठा हुआ नहीं है वहां पे किसी

दिए गए चित्र मे हम देख पा रहे है ये सेलून की चित्र है वहां पे जो दो तीन चेयरे लगी है जहां पर कोई कस्टमर आए हुए नहीं है वहां पे एक इंसान जो है खड़े हुए है।